बहुत ही अच्छा ग्रीन ग्रास से गेट बना हुआ है।

झरना काफी अच्छा गिर रहा है और बहुत ही अच्छा लोकेशन यहाँ का लग रहा है और--

वैसा लग रहा है जैसे प्रैक्टिकल इन लोगों का हो रहा है सब बच्चों का --

ये तो जेंट्स सलून है सलून के जस्ट बाहर एक जेंट्स खड़ा है।

ड्रेसिंग टेबल है ड्रेसिंग टेबल पे एक छोटा सा बिसलेरी बोतल लग रहा है।

रेक और एक रखा है थर्मस भी है।

जो ख़त्म हो रहे है छोटे -छोटे रखे हुए है चेयर हैं।

बगल में आप काफी बिल्डिंग है वाइट वाइट वाइट रेड में और बगल-बगल--

कुछ समान भी लग रहा रखा हुआ है।

जॉगिंग रूम है कुछ लोग मशीन पे एक्सरसाइज कर रहे --

एक ठंडा स्लीपिंग लाइन खड़ा हुआ हैं।